इस पिक्चर में हमें बहुत सारे मनुष्य देख सकते हैं।

इस छवि में हम एक स्टैचू को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम एक बेड़ा का घर को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम बड़े बड़े पेड़ों को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम बहोत सारे हिरनों को देख सकते हैं।

यह छवि में हमें बहुत सारे गांछे दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें दो बोतल नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हम एयर कंडीशनर को देख सकते हैं।

यह तस्वीर में हमें एक खुला आसमान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हम बहोत से हरे रंग के गाछो को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें मकाने दिखाई पड़ रही है।

इस पिक्चर में हमें कई सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर में हमें जिम की सामग्रियां दिख रही है।

इस छवि में हमें हरे हरे घास नजर आ रहे हैं।

छवि में हम एक ऑफिस को देख सकते हैं।

तस्वीर में हम बहुत सारे दुकानों को देख सकते हैं।